सामने एक व्यक्ति ब्लैक कलर के--

सामने एक महिला माला बनाती हुई दिखाई --

जिसमें कई व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने येलो कलर का एक मकान भी दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट जैसा इधर से दिखाई दे रहा है।

और एक व्यक्ति रोड पर खड़ा हुआ--

यह एक मैरिज गार्डन जैसा दिखाई दे --

सामने एक बड़ा मकान दिखाई दे रहा है।